ये एक मार्केट है यहाँ पर कई सारे ऑटो बसेस और गाड़ी खड़ी हुई है |

साइड में बहोत सारी नाव उलटी और सीधी है।